यखा मा हमि एक झील दिखेण लगीं जु एक पहाड़ कु किनारा फंडा और लाईट का खम्बा दिखेण लग्यां ।

कुड़ु क कुड़ु कई कोई पुराणा जमाना का कुड़ा और बड़ा सी पहाड़ दिखेण लग्युं पहाड़ एंच फुण कूड़ेड़ु लग्युं और एंच आसमान पर भी छकि बादल आयां।

और कुड़ा पर लाइट लूट और बिजली का खम्बा जंगला जुंगला दिखेण लग्यां।